अं आगे झरना जैसा जगह कुछ दिख रहा है एक मैदान सा है मैदान बहोत हरा भरा है।

मुझे एक शोफा दिखाई दे रहा है और एक दुकान है जिसमें सोफा रखा हुआ है।

ओ मुझे दिखाई दे रही है वो रंग बिरंगी हैं बहोत अच्छा सा फील हो रहा है बहोत अच्छी दुकान है।

और बहोत खुबसूरत नजारा है ऐसा लग रहा है एक बहोत अच्छा लग रहा है बहोत खूबसूरत सा माहौल हो--

और ये जिम के ऊपर कुछ लाइट्स हैं और कुछ रंगीन हैं कुछ येलो हैं।

अब कुछ रिंच वगैरा रखी हुई है इसको स्क्रू ड्राइवर रखा हुआ--

और किसी का फेस नहीं दिखाई दे रहा साफ और सब लोग अपना फेस ढके हुए हैं कुछ महिलाएं फादर को देख रही हैं।

सब्जी की दुकान है वहां पे कुछ सब्जिया रखे हुए हैं जैसे परवल है गाजर है मूली है और कुछ नींबू टंगे हुए हैं।

एक बच्चा पेड़ पे चढ़ रहा है उसका फेस नहीं दिखाई दे रहा हैं पीछे उसके मैदानसा है।

एक कंट्रक्शन बिल्डिंग है जो कंट्रक्शन का काम चालू है और इसमें बहोत सारे सरिया लगे हुए हैं और इसमें पर्दा सा लगा हुआ है जो ग्रीन कलर का है।

जहां पे एक अं खेत है खेत में पानी भरा हुआ है।

फसल बहोत खूबसूरत दिख रही है और ऊपर बादल सा है और आसमान बहोत खूबसूरत सा लग रहा है बहोत अच्छा लग रहा है।

बिजली प्रदान करती हैं और ट्रांफॉर्मर रखा हैं।

ये एक गैरेज हैं वहां पे बहोत सारी चीजें रखीं हुई हैं आयल रखीं हुई हैं।

इसमें एक अ बुक स्टेशनरी हैं अ जो हैप्पी इंटरप्राइजेज से हैं और अ नीचे कुछ शॉप है।

और उसमें कुछ जाले लटक रहें हैं बहोत अच्छा लगा--

और कुछ बोट्स जा रही है जिसपे कुछ इंसान बैठे हुए है।

उधर एक लड़का खड़ा हुआ है और ऑफिस में अह कुछ लाइट्स लगी हुई हैं कुछ फैंस लगे हुए हैं।

कुछ मेला जैसा लगा हुआ है और कुछ इंसान वहां पे खड़े हुए है।

और बहोत अच्छा सा महसूस हो रहा है और पीछे पहाड़ है।